ये बिहार का नंबर है जिस के आगे एक भाई साहेब पगड़ी बांध के लाल कलर सर्ट मे हाथ मे रुमाल पकड़ के खड़े होके फोंटो खिचवाये है।

एक भाई ने तो मोबाईल से फोटो से तस्वीर ले रहे है हाफ टी-शर्ट पहेन के।

दोनों के पास चश्मा है। एक ने तो जूती ऊ मोजी पहनी हुई है खाली पैर--

ब्रिज है जिस के ऊपर से वृद्ध आदमी चल रहा वही पे।